इस इमेज मे मुझे एक खली रोड दिखाई दे रही है रोड के किनारे पर मुझे घर दिखाई दे रहे है जो ग्रीन और ऑरेंज रंग से रंगे हुए हैं।

--और छत पर मुझे एक सफेद कलर का पंखा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे एक केमेरा दिखाई दे रहा है कोने--

किनारे पर मुझे छोटे-छोटे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं और बड़े-बड़े ट्री दिखाई दे रहे हैं। सामने यहाँ पर मुुझे एक वाइट कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ इमेज मुझे एक नदी के दिख रहे हैं ये नदी बहुत लम्बी है।

इस इमेज में मुझे एक शॉप नज़र आ रही है। और यह शॉप येलो और वाइट कलर की है। शॉप के दरवाज़े अ कांच के बने हुए है।

इस इमेज मे मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है| तालाब पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए है जिसपे घास उगी हुई है।

ये मंदिर ऑरेंज रेड और ग्रीन कलर के है मंदिर के पास का एरिया खाली है।